मुझे इस तस्वीर मे कुछ डमि बने हुए दिखाई दे रहे है जिनके सामने तबल वीणा रखे हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे इस तस्वीर मे एक बड़ा सा ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है अ यहाँ पे बहुत सारी लेडिज बैठी हुई दिखाई दे रही है और कुछ लेडिज ने गजरा लगाये हुए है वहाँ --

मुझे इस तस्वीर मे एक बड़ा सा ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है जहाँ --

और दो लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे है और एक व्यक्ति बेट ले जाते हुए दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड मे बहुत सारे बॉले भी डली हुई दिखाई दे रही --

एक एल_इ _डी भी लगी हुई दिखाई दे रही है और एक गाड़ी का नंबर टू सिक्स एट है लास्ट --

के सामने नीले कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसके नीचे बहोत सारे ऑटो ई रिक्शा खड़े हुए दिखाई दे रही हैं ऊपर लक्स कोजी का फ्लैक्स लगा हुआ हैं।

और सामने एक डी. पी. भी रखी हुई दिखाई दे रही है उसके पास में छोटा सा घर भी बना हुआ है।

पीछे महाकाल की फोटो रखी हे दिखाई दे रही हैं और कप्बोर्ड में कुछ किताबे भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हे कुछ लोगो के हाथ में जलती हुए मिसाल --

जिस के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है वहाँ पर बहुत सारी छड़े भी डली हुई है सब लोगो के ऊपर सिर पर ये पीले कलर का हेलमेट है एक व्यक्ति के ऊपर हेलमेट नहीं है।

कुछ बच्चे उपर चड़े है तो कुछ बच्चे वहाँ से फिसलते हुए दिखाई दे रहे--